जिसमें एक खेत देख रहा है जिसमें फसल उगी हुई है आस-पास काफी सारे पेड़ और जंगल भी है।

यहाँ पर एक औरत कुछ बच्चों को डांस सिखाती हुई दिख रही है | सामने काफी बड़े बड़े आईने लगे हुए है।

यहाँ पर कुछ लोग म्यूजिक प्ले करते हुए दिख रहे हैं | एक के पास हारमोनियम और एक के पास ढोलक रखा हुआ है | आसपास और भी कई लोग दिख रहे हैं |